इस इमेज में बस स्टैंड दिखाई--

दे रहा है बहोत सारी बसें दिखाई--

कांच की ग्लासे दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस इमेज में एक दवाइयां की दुकान--

मुझे इस इमेज में एस_बी_आई बैंक दिखाई--

बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।